दोनो विपरीत दिशा मे खड़ी है और जो चर्च के नीचे दीवाल है वो उसने ब्लू कॉलर पेंट का लगा है।

एक टीन शेड पे नजर आ रहा है और कोइ जानवर भी नजर आ रहा है इसमे लोहैं का समान सीमेन्ट और बहुत सारा वेस्ट मटिरियल दिख रहा है।

ऊपर आकाश में नीला और सफेद रंग दिख रहा है ये बहुत ही प्यारा शिनरी का जैसा दिख रहा है।

ये सड़क से एक डी.जे की गाड़ी जा रही है पेड़ के पास चार पांच लोग खड़े हुए--

यह बहुत खूबसूरत सड़क किनारा नजर आ रहा हैजिसमे एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें बहुत ऊंचा है।

लोहे की और सीमेंट रेलिंग बनी हुई है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और उसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।